पे एक स्प्लेंडर बाइक भी खरी है।

का कलर कतिक है और यहाँ पे--

यहां पे एक बहुत ही पुराना मा--

यहाँ पे एक भग वान का फोटो रखा गया मूर्ति है।

यहाँ एक बरा सी मिठाई का दुकान भी है और यहाँ पे--

पेड़-पौधे भी लगाए हुए हैं और यहाँ पे--

सारी लरकियां बैठी हुई हैं और यहाँ पे--

बहुत सारी साड़ियां भी रखी हुई हैं।

का कलर ब्लू है और वो एल्वेस्टर से बनाया गया है।

और उसके बगल में एक ट्रांसफॉर्मल भी--

और यहां पे एक बकरी भी है जो की ब्लैक कलर की है।

यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और यहाँ पे--

कुछ ईटें भी रखी हुई है और यहां पे--

आदमी खड़ा है और वहां पे सब मछली लेने के लिए खड़ा है।

और यहाँ पे एक व्हाईट फॉर्म में रखा हुआ--

मछली सब है जो बर्फ में है और वह--

और वह धुंआ--

और यह हं हं यहाँ पे एक बहुत ही हरा भरा पेड़ पौधा नजर--

यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉल है और या--

और यहाँ पे बहुत से सारे पैकिंग किए--

जा रहा है और यहां पे एक लेडिज भी--

घड़ी है जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई।

यहां पे मंगरूनम अम ओनली विमल--

का कलर रेड है और यहाँ पे मंगलम लिखा हुआ है और--